बैडमिंटन का रे नेट जो खोया दो व्यक्ति को देख पा रहे जिनमें से एक ने--

अमेरिका का बना हुआ लंदन का ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ है।

और नीचे में हम लोग देख पा रहे हैं बिना लगन देख पा रहे हैं।

व्हाइट और रेड कलर के टाइल से बने हुए हैं।

स्कूटर मने सामने में हम लोग एक रोड देख पा रहे हैं।

यहां पर हमलोग एक पोस्टर देख पा रहे एक व्यक्ति का फोटो बना हुआ सामने कुछ पेप्सी का बॉटल देख पा रहें--

इस फोटो का नाम बड़ा सा बिल्डिंग देख

इस फोटो को सुपार मार्केट जैसा कुछ देख पा रे--

कुछ हम लोग बड़े बड़े कार देख पा रहे हैं जो कि सफेद कलर के हैं महिला को देख--

एक बड़ासा मंदिर देख पा रहे हैं जो कि व्हाइट कलर का है। सामने में ट्रेन देख पा रहे हैं।

व्हाइट कलर का डोर है ट्यूब लाइट देख पर सामने ब्लैक कलर का--

साइड में हम लोग एक वाइट कलर का स्विच बोर्ड देख पा रहे हैं उसके ऊपर हम लोग एक कांच का सीसी देख पा रहे हैं जिसका --

प्लास्टिक का बना हुआ है ब्लैक कलर का--

एक

वॉशरूम देख पा रहे है।

हमारा नल का देख पा रही एक ब्लैक कलर के हैं साइड में बहोत सारा मतलब--

डॉक्टर का कुछ पैशन्ट अम् लग रहा है। सामने वो जो दीवार का रंग है वो हम लोग व्हाइट देख पा रहे है।

बालू डेक रहे और उनमे से एक ने रेड कलर का गंजी अ--